और यहां पर कुछ व्यक्ति भी खड़े होकर इसका आनंद ले रहे हैं।

और पास में कुछ खुर्शीया रखी है जो की लाल कलर में है।

यह फोटो एक शहर के चौराहे की है यहां पर बहोत सारी गाड़ियां जा रही है सामने एक मीनार भी बनी हुई है उसपर एक लाइट जल रही है।

यह फोटो एक चर्च की दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे पांच या छह व्यक्ति सफेद रंग के कपड़ों में बैठे हैं।

पास मे एक फ्रिज भी रखा लगा हुआ है जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

और बहुत सारे बाईकें हैं एक ब्लैक भी लगाया हुआ है एक बिल्डिंग के ऊपर एक ए_सी लगी हुई है ये बिल्डिंग का रंग लाल है।

और उसमें एक गाड़ी भी खड़ी है यह एक कच्ची गली है जो किसी गांव की दिखाई दे रही है।

बाहर कुछ स्टील की रेलिंग लगी हुई है और बिल्डिंग के ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं।

और बिल्डिंग का रंग पीला किया हुआ है।

पास मे कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए है और यहां पर छोटे मोटे पौधे भी लगाये गये है।

ये स्विमिंग पूल है बहोत बड़ा है।

इस फोटो मे चार लड़कियां डांस करती दिखाई दे रही है और लड़कियों ने साड़ी पहनी हुई है।

पीछे में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगी लगा हुआ है जो किसी विद्यालय में यह प्रतियोगिता हो रही है।

सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी रखी हुई है और पानी की एक इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कटोरी भी रखी हुई है।

एक पिलंग भी लगी हुई है पिलंग के ऊपर गीदा लगाया गया हैं और चार तकिए रखे गए हैं।